हरियाली भी दिख रही है।

चित्र में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमे--

काफी सारे दुकाने भी दिख रही है।

दुकान दिखाई दे रही है।

फुटवेअर की दुकान दिखाई दे रही है।

चेयर्स पे बैठे हैं और कुछ लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं।

देख रहा है जिसमें काफी सारे बलूंस का--

दे रही है जिसमें एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

डेकोरेशन की हुई दिखाई दे रही है।

दे रही हैं और मंडप भी दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में दो व्यक्ति--

मुझे इस चित्र में नदी--

एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है।

काफी सारी मोमबत्तियां जलती हुई--